इस चित्र में हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो मजे से किसी डांस का अभ्यास कर रहे हैं ये कमरा बहुत बड़ा है छत पे भी लाइट लगी हुई है।

यहाँ पर हमें एक महाविद्यालय दिखाई दे रहा है जिसके बाहर कुछ छात्र खड़े हुए है इस यहाँ पर एक पीले रंग की बिल्डिंग हैं।

इस चित्र में हमें एक लकड़ी का प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है जिस पर एक लड़का नेत्र की मुद्रा में बैठा हुआ है उसने ग्रे कलर की अ ड्रेस पहनी है और हाथ के हाथ और पैर दोनों में जूते पहने हैं।